पेड़ दिखाई दे रहे हैं और एक हरा दरवाजा दिख रहा है।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

तीन बच्चिया दिखाई दे रही हैं।

इस चित्र में एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है यहाँ पर फुलकी की दुकान है।

एक आदमी मोबाइल चला रहा है।

एक थाली रखी है एक दरी बिछी हुई है।

कुछ बच्चे नजर आ रहें हैं।

एक नीली है एक सफेद है।

एक आदमी दिखाई दे रहा है जिसने कोट पेंट पहना है।

पीछे हमें दो दिल दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में एक जिम दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में एक आदमी दिखाई दे रहा हैं।

तीन औरत नजर आ रही हैं।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

स्टेट बैंक का ए_टी_एम दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में एक होटल दिखाई दे रहा है।

सामने एक लैपटॉप नजर आ रहा है।

यह सब पाँच पखुड की है और सुरमई रंग की हैं।

इस चित्र में एक घर दिखाई दे रहा है।

यहां कुछ लोग सरसों के फूल तोड़ रहे हैं।

एक सूखी लकड़ी दिखाई दे रही है सूखे पत्ते दिख रहे हैं।

एक बेंच दिखाई दे रही है जो कि सफेद रंग की पुती है।

इस चित्र में एक होटल रूम दिखाई दे रहा है एक पलंग रखा है।